लाल रंग की जैकेट पहनी हुई है और पैंट पहना हुआ हैं।

एक ये हॉल है और हॉल में बोहोत रंग- बिरंगे --

और यहाँ पर देखिए बोहोत सारे गमले रखे हुए हैं जिसमें कि डिज़ाइनिंग अ की गई हैं लाइट से और यहाँ पर देखिए कुछ आदमी खड़े हैं।

बोहोत ज्यादा घना जंग जंगल जैसा बोहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ पर कुछ आदमी खड़े हैं और कुछ आदमी बैठे हुए हैं।

देखिये सब बोहोत बड़ा-सा हॉल हैं और हॉल में बोहोत सारे बेंच लगे हुए हैं और ऊपर देखिए बोहोत सारी लाइट लगी हुई हैं।

नीले रंग का रंग किया गया है और अगल-बगल देखिए पेड़ हैं और इधर देखिए मैदान हैं जो कि मिट्टी रंग का है उधर हरा भी है।

सामने देखिए ये सफ़ेद रंग का घर हैं। जिसमे की इधर आगे बोर्ड पे लिखा है एल.आई.सी ।

हेडलाइट लगी हुई हैं और यहाँ पर अगल बगल से तारे गई हुई हैं।

देखिए वी-मार्ट है और वी-मार्ट के इधर बगल में लिखा गया हैं एंटर द वर्ल्ड ऑफ़ फॅशन और यहाँ पर देखिए --

सफ़ेद रंग से लिखा गया है। प्राइज़ लेस और बीच में लिखा है वी-मार्ट और इधर बगल में लिखा है फॅशन ।

और यहाँ पर देखिए ऊपर जो है लोहे की तार की मशीन --

सेम कलर में अ बस है और रास्ते देखिये मिट्टी जैसे हैं।

और मेहंदी के कोन भी रखे हुए हैं और यहाँ पर बहोत सारे बोरो प्लस क्रीम वगेरे भी रखे --

ये सामने देख रहे हैं दो गाड़ी खड़ी हुई है जिसमें की एक वैन और दूसरा कार है और बगल में उसकी इटें की दीवारे हैं।

पेंसिल आ रब्बर कम्पास एवं अन्य प्रकार के स्टेशनरी सामान --

और यहाँ पर देखिए लिखा है इस बोर्ड पर लिखा है स्टे हंग्री --

और यहाँ पर देखिए सफ़ेद रंग का पंखा लगा हुआ है और रंग-बिरंगी लाइट्स लगी हुई हैं।

आसमानी रंग की तौलिया ओढ़ी हुवी है और --